ये बस के अंदर का है जहां पे बैठने के लिए कुर्सीये है नीले कलर की है सफ़ेद कलर की इनके पास बिंदीए है काले कलर का उनके ऊपर सर रखने का है।

और साइड में नीले कलर के परदे भी डलें है और हरी कलर की नीचे ज़मींन पे मैट बिछी हैं।

एक आदमी पत्थर के ऊपर बैठा है यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है ओर पत्थरो के पीछे पेड़ है और सामने पानी है जिसके ऊपर कुछ बोट्स है और बोट के ऊपर लोग चड रहे है।

ये सामने दो आदमी खड़े है एक ने वाइट कलर की शर्ट और एक ने ब्लैक कलर की शर्ट पेहनी है और उसके साइड एक मॉनिटर लगा हुआ है।

रंग बिरंगे फूल है येलो कलर के भी फूल है पर्पल कलर के भी फूल है पिंक और ब्लू कलर के भी फूल हैं।

गाड़ी से जा रहे हे यहा पे एक काले कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई हे ओर एक आदमी नंगे पुनगे खड़ा हे ओर ब्लैक कलर की शर्ट पेहना--

सामने एक बिल्डिंग है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा है और अंदर भी लोग खड़े है और बाहर बाइक्स और खड़ी हुई है स्कूटी खड़ी हुई है।

सामने एक बस खड़ी हे जिसके ऊपर लाल कलर के फूलों से वो सजी हुई हे ऊपर एक बड़ा सा कांच हे ओर दो वाईपर हे कांच साफ करने के लिए बस के बस पे विषा लिखा हे एक आदमी खड़ा हे।

सामने हरे कलर के पेड़ दिख रहे है और एक बोर्ड दिख रही है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर का टायर बना हैं।

सामने एक तालाब दिख रहा है जिसके पीछे दो पहाड़ दिखाई है हरे कलर के पेड़ लगे हुए है और दो बोट चल रही है एक लड़का हस रहा है जिसके हाथ मे जाल हैं।